यह एक बाजार है सामने दो बस लगा हुआ है यहां बहोत सारे बाइक हैं यहां एक आदमी बात कर रहा है एक आदमी बाइक से जा रहा है।

ये एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है यहां सामने झूला भी लगा हुआ है ये बहुत अच्छा गार्डन भी है।

इसके सामने एक टेबल भी है ग्रीन कलर का कार्पेट भी है बगल में बहुत सारे बैलून लगाए गए हैं उसके ऊपर फूल भी लगाए गए हैं।

नीचे कुछ गिरा हुआ है औ बगल में यलो एंड ग्रीन एंड ब्लू का कुछ भी रखा गया है।

यहां एक पुरुष के ऊपर लाइट लगा हुआ है बगल में एक वाइट कलर का कुछ रखा गया है।

सामने घर है उसके सामने एक बड़ा सा फील्ड भी है उसमें एक मशीन भी रखा गया बगल में व्हाइट कलर के पिलर भी है।

ये एक पुल है उसके नीचे पानी बहोत सारे हैं बगल में बैरियर जैसा कुछ बनाया गया है सामने एक मकान भी है।

ये एक फोटो कोई घीच रहा है इसके बगल में वो दो आदमी भी है इसके सामने एक बड़ा सा--

उसके बगल में अ यलो कलर का कुछ रखा गया है ऊपर स्टील का भी रखा गया है नीचे अउ ब्राउन कलर का कुछ रखा गया वी है।

उसमें ए_सी और तार भी बहोत सारे हैं बगल में पीलर भी है उसके एक और बगल में गेट और व्हाइट कलर का कुछ रखा गया है।

नीचे एक रोड भी है उसके उपर ब्लू कलर का कुछ रखा गया है उसके बगल में व्हाइट कलर का कुछ बना है।